सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है उसके आजू-बाजू भी तो मैजिक --

इस फोटो में सामने एक बहुत बड़ा वो नजर आ रहा है गुम्बद टाइप का किला और पूरा मैदान पड़ा हुआ है।

सामने एक होटल नज़र आ रहा है होटल की बिल्डिंग जो है सफ़ेद कलर की है और दो --

होटल पर लाल कलर से लिखा हुआ नजर है होटल पे और एक गेट नजर आ रहा है।

सामने फिसलपट्टी नजर आ रहा है फिसलपट्टी के आस-पास कोई भी नजर नहीं आ रहा फिसलपट्टी का जो पोल है वो --

सामने एक सफेद कलर की मस्जिद नजर आ रही है मस्जिद है या फिर मंदिर पता नहीं।

और कुर्सी भी लगी हुईं हैं एक लड़की का फोटो बना हुआ है सामने टी.वी. लगी हुई है।

दो शटर आजु-बाजु में है एक शटर खुला हुआ है शटर में --

और जो वो है मंदिर भी भगवा कलर का ही है दो आदमी जो है वो उतर कर आ रहे हैं।

और जो है गेट जो है गेट के पीछे काला-काला नजर आ रहा है सब कुछ और कुछ तार भी हैं।

सामने कुछ मजदूर काम कर रहे हैं घर बना रहे हैं जो है सामने कच्चा घर नजर आ रहा है जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है।